पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और दीवार पर एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा हैं।

लाल रंग की एक कुर्सी दिखाई दे रही है।

आसमान दिखाई दे रहा हैं और बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही--

और लकड़ीये भी दिखाई दे रहे हैं।

लाल रंग की इमारत दिखाई दे रही है।

लोहे की पाइप दिखाई दे रही है।

उस स्ट्रीट्स लाइट भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर दुकाने दिखाई दे रही हैं।

आसमान भी दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कृष्णा--